कि यहां दीवार में बहुत सारी हमें चीजें रख --

खयुई दिखाई दे रही है जैसे कि हमें एक गण --

पति बाप्पा दिखाई दे रहै है और प्लेट --

सारे लोग यहां गर्वा कर रहे हैं।

और हमें ईट दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है इसका गेट खुला हुआ नजर आ रहा है।

और हमें अंदर की ओर दिखाई दे रहा है।

उनका फेस ही दिखाई दे रहा है और ये पन्नी में कवर है।

जो की ये वाइट कलर के है और इनका सिंगार भी बहुत प्यार है।

और चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है जो हमें दिख रही है।

जैसा कि हमें यहां दिखाई दे रहा है कि यह एक --

और हमें यहां पर ये पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

की यहां पर फोटो शूट चल रहा है।

और डेकोरेशन बहुत बढ़िया दिखा रहा है ।

और हमें ये लड़का प्रेस करते हुए नज़र--

ब्लू कलर की और इसमें हमें सीरीज भी दिखाई दे रही है।

और ये पत्थर उन्होंने ग्रीन ग्रीन टाइप दिखाई दे रहे हैं वो पानी आकर --

दिखाई दे रहे है जो की ये सभी बच्चे अप--

ने अपना वर्क कर रहे है और इनके ड्राइंग शीट --

और हमें यहां दिख रहा है और ये मंदिर के आस पड़ोस में हमें कोई दिखाई दे रहा है।

जैसा कि हमें यहां नजर आ रहा है कि यहां पर एरोप्लेन लैंड हुआ है।

और हमें कुछ लोग वहां से उतरते हुए नजर आ रहे हैं।

ओर आड़ -पड़ोस में हमें घास -फूस दिखाई दे रही हैं।

तीनों चारों तरफ सामने एक कुर्सी रखी है।

अंदर हमें एक लाल कलर की बाल्टी दिखाई दे रही है।

जैसा की हमे यहाँ दिखाई दे रहा है की यह एक सनातनी धर्म का मंदिर है और यहाँ पर ऊपर की और हमे--

जो कि ये कबेलू टाइप यहां पर बने हुए हैं।

विलेज है और हमें यहां पर बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं जो भी अलग-अलग प्रकार के हैं।

जैसा कि हमें यह दिखाई दे रहा है कि यह एक नदी है और इस नदी के थोड़ी-थोड़ी दूरी पे हमें पत --

बच्चे है बड़े -बड़े और ये खेल रहे हैं और यहाँ पर घास भी हमे दिखाई दे रही है ।

और इनके पीछे से हमें पहाड़ी भी दिखाई दे रही है।

वाइट बोर्ड भी दिख रहा है और टू फैन दिखाई दे रहे हैं और सामने ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

और हमें बेंच भी दिखाई दे रही है जो कि ये लाइन बाय लाइन जमी हुई है।

पर दिखाई दे रही है और यहां पर बहुत ज्यादा --

पत्थर पर लिखा है ब अ रवि और बार्बी अ बार्ली ऐसा कुछ लिखा हुआ है।

जैसा कि हमें यहां दिखाई दे रहा है कि यह एक दरगाह है और --

जैसा कि हमें यहां दिखाई दे रहा है कि शो केस में हमें --

और ये नदी हमे थोड़ी दल-दल टाइप की दिखाई दे रही है जो की इसम के आस-पास हमे पेड़-पौधे दिख रहे--

ये मैन्युफैक्चर बाय मिलते है और यहाँ पर हमें कुछ बच्चे दिखाई दे रहा है जो कि अलग-अलग वेशभूषा में है ये --

और हमें यहां नीचे की ओर ठेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी बिल्डिंग के नीचे एक दुकान भी दिखाई दे रही है।

कुछ लोग मतलब यहाँ एक जाना बजा रहा है दूसरा जग अ जना गा रहा है और तीसरा जना गिटार बजा रहा है ऐसे ये लोग--

बहोत ही उबड़-खाबड़ जगह दिखाई दे रही है ऊपर से हमे कलर वाली अ ऊपर से हमे मिट्टी कलर कि और नीचे से हमे ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है ।